एक सैफद कलर की बोहोत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जो की जमुई बी_एड कॉलेज जमुई की है।

साइड मे कुछ लेडिज बैठी हुई है झूलों का जो कलर है वो नीले और लाल कलर का दिखाई दे रहा है।

फोटो में सामने एक कूरियर पार्सल का ऑफिस का नजर आ रहा है। इस कूरियर पार्सल ऑफिस के सामने कुछ लोग खड़े हुए।

दो लोग यहां पे साइड मे टेबल मे बैठे हुए नजर आ रहे है।

ने सभी महिला मिलके उस दूसरी महिला को कुछ देते हुए नजर आ रहे है।